हमें सामने बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं कुछ औरते डांस करती दिखाई पड़ रही हैं सामने एक औरत ने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं सामने कुछ झालर जैसा दिखाई पड़ रहा है एक लाईट भी दिखाई पड़ रहा है पीछे कुछ मकान जैसा बना हुआ है।

--सामने कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहे है जो कि ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहे हैं एक खंभा दिखाई पड़ रहा है।

सामने एक रोड जैसा दिखाई पड़ रहा है जो कि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है साइड में एक सीढ़ी जैसा बना हुआ है जो कि रेड और ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है सामने एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जो कि ग्रे कलर में दिख रही है सामने एक बिल्डिंग येलो कलर में दिखाई पड़ रही है सामने कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

--सामने काँच का दरवाजा दिखाई पड़ रहा है।

ये कांच का अलमारी जैसा बना हुआ है उसपे कुछ सामान रखा हुआ है सामने एक पंखा दिखाई पड़ रही है जो--

ऊपर एक फैन भी दिखाई पड़ रहा है पीछे एक कमरा दिखाई पड़ रहा है पीछे एक दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा है जो कि क्रीम कलर का दिखाई पड़ रहा है।

--सामने बस दिखाई पड़ रही है एक बस ग्रीन कलर की दिखाई पड़ रही है सामने वाली बस डार्क ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है सामने एक ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ रहा है जो कि येलो और ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा है।

कांच दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्लू और व्हाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है सामने एक बिजली का खंभा लगा हुआ है जो कि जिसपे बहुत सारी तारे लगी हुई है सामने एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा है सामने एक गेट दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्लैक कलर में लगा हुआ है सामने जमीन का कलर ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है।

खिड़की दिखाई पड़ रही जिस पर कांच लगा हुआ है सामने एक टेबल जैसा दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्राउन कलर ग्रे कलर मे दिखाई पड़ रहा है।

--सामने एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जो कि ब्लू कलर की दिखाई पड़ रही है इस पर सिल्वर कलर की खिड़की जैसा बना हुआ है सामने एक तार दिखाई पड़ रहा है। एक --

सामने कुछ व्हाइट कलर का बॉल जैसा बना हुआ है सामने एक स्कूटर खड़ा हुआ है जो कि रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है पीछे कुछ गुब्बारे लटके हुए हैं जो कि व्हाइट और ब्लू कलर के दिखाई पड़ रहे हैं साइड में कुछ सोफे रखे हैं जो की रेड कलर के दिखाई पड़ रहे हैं।

एक कार दिखाई पड़ रही है जो कि सिल्वर कलर की दिखाई पड़ रही है यह कुछ ऊंचाई पे खड़ी है सामने एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जो कि रेड और व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रही है यहां पे कुछ खिड़कियां भी दिखाई पड़ रही है सामने एक और बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है।

हरी घास दिखाई पड़ रही है सामने खेत दिखाई पड़ रहा है जिसकी मिट्टी ब्राउन कलर येलो कलर में दिखाई पड़ रही है सामने कुछ खंभा जैसा लग रहा है उसमें बहुत सारे तार खींचे हुए है। सा --